इसी के साइड में एक लड़का खड़ा हुआ है जो हाथ में मोबाइल लेके किसी अन्य व्यक्ति की फोटो खींच रहा है।

इस इमेज में एक बिल्डिंग नजर आ रहा है जिसके सामने एक अ गार्डन नजर आ रहा है जो हरा भरा दिख रहा है इनमे सामने की तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जिस पर जिसके बड़ी बड़ी --

जिस पर पीले कलर का एक एक शहर जैसा बिल्डिंग बर बसाया गया है जहाँ पर कुछ ब्लैक कलर की कुछ चीज लगाई गई है।

इस इमेज में एक भूर कपड़े का शोरूम नजर आ रहा है जहाँ पर रेड कलर के कपड़े़ टंगे हुए हैं और यहाँ पर एक डमी रख रखा हुआ है।